यह एक पुराना जगह है जहाँ पे पत्थरों से बना हुआ दीवार है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म --

और घर में रहते है लोग ओर घर बनाया जा रहा हैं ।

यह एक स्कूल है जहाँ पे बच्चों को प्रोजेक्ट बनाना सिखाया जा रहा है।

यह एक नदी है जहाँ पे बहुत सारे बोर्ड हैं।

और यह किला बहुत ही आकर्षक है।

और यह होटल में बहुत तरह का सामान मिलता है।